टेम्पू के साइड में एक मोटर साइकिल दिख रहा है।

अंदर में बल्ब लगाया गया है।

और यहां पे दो आदमी रोड के किना जा रहा है।

और इसका दुकान से दोनों साइड एक एक करके बाइक खड़ा है।

और उसके साइड में घास थोड़ा थोड़ा है।

और इसके ऊपर में ऑरेंज कलर का कलर कर किया हुआ--

मॉल के साइड में बहुत सारा पोस्टर लगाया है।

गेट के पास एक आदमी कुर्सी लगा के बैठा हुआ है।

और अंदर का गेट खुला है।

यह एक मंदिल है।

एरोप्लेन का ऊपर में रेड कलर का है।

एक टेबुल में एक डिब्बा रखा हुआ है।

यह एक मंदिल है।

और यहां पे तार भी ऊपर में गया है।

मंदिर का गेट खुला है।

क्रिकेट मैदान में बहुत सारा आदमी खड़ा है।

ऊपर में एक पोस्टर लगाया हुआ हैं।

यहां पे एक आदमी पिलर के साइड में खड़ा है।

ऊपर दो आदमी ब्लैक कलर टी_शर्ट पहना है।